ऐसे क्यों होना भी चाहिए कि बहोत सारी चीजें हम एक्सप्लोर भी कर लें।

जो कि इसमें स्पीड मेंटेन हो जाती है इंसान की और एक दिमाग--

और जिसे हम आगे की ओर ग्रोथ की ओर देखते हैं और ग्रोथ हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है।

और हमें शटर बहोत जरूरी है शॉप में लाना शटर बहोत इंपॉर्टेंट होते--

पेड़ पौधे यहां का दिखाई नेचुरली चीज लगी हैं जो कि बहोत अच्छा फेस दिखा रही हैं।